इसके ऊपर एक वाइट कलर का बल्ब जला हुआ है।

यहां सामने एक चर्च दिख रहा है।

बगल मे दो गेट दिख रहा है जो जालीदार है।

यह एक हाल है जहां बहुत सारे टाइल्स लगाए गए हैं।

जिसके बगल में बहुत सारी हरी भरी पेड़ पौधे दिख रहे।

इस चित्र में बहोत सारे फूल दिख रहे है।

नीचे एक लड़का बैठा हुआ है।

जो की मास्क पहना हुआ है हाफ टी शर्ट पहना हुआ है चश्मा पहना हुआ है।

बगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे है।

बगल में बहोत सारे लोग दिख रहे हैं नि--

ये हरा कलर का चार्ट लगा है।

नीचे बहोत सारे रैक बनाए गए हैं।

जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखा हुआ है कंप्यूटर वन है।

बगल में दो टेबल हैं जो ग्रीन कलर का कवर किया हुआ है।

बगल में बहुत सारे फूल दिख रहा है फूल का कलर रेड है।

नीचे बहुत सारे खड़े हैं लेडिस और जेंट्स ।

इस मैदान में बहोत सारे फूल लगे हुए हैं।

उसके बगल में एक पंखा दिख रहा है।

जिसमें ताला लगा हुआ है।

यहां एक बाइक खड़ी दिख रही है।

इसमें बहुत सारी साड़ी रखी हुई है।

जहां एक महिला दिख रही है।

बगल में एक व्हाइट कलर का लाइट जला दिख रहा--